यहाँ बाजू टीवी चालू है और न्यूज का चैनल लगाया हुआ है।

यहाँ पर बाजु में अपन अलेमेंट का पोस्टर भी लगया हुआ है यहाँ पर और बहोत सारे प्रोफेसर --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

और यहाँ पे आजू-बाजू फतरे हैं और ये पानी आगे बहता हुआ जा रहा है ।

यहाँ पे एक गाडी है यहाँ पे बड़े-बड़े दीवारे उठाये गये है यहाँ पे --

यहाँ पे लावे के खम्भे दिख रहे है आजू बाजू शो की झाडा भी लगाये गये है आजू बाजू बड़े बड़े जंड झाडा है बिल्डिंगा है लाइट के बड़े बड़े फोकस है।

यहाँ पर ऊपर छत पर सोलर सिस्टम भी लगाए गए है यहाँ पर पलड़े भी मारे गए यहाँ पर वेस्ट सामान को रखा गया है खा तो--

जानवरों को देखा जाता है और यहाँ पे इसका गेट खुला है आजू-बाजू बिल्डिंगे हैं यहाँ जाली मारी गई है ।

यहां बाजू पार्क के जैसा है इसमें हरी भरी घास उठी हुई है आजू बाजू बड़े बड़े पाइपां दिख रहे हैं बहोत सारी गाड़ियां हैं बहोत सारे लोग हैं।

ये एक बड़ा सा मैदान दिख रहा है बाजु में रस्ते है यहाँ पे जाली मरी गयी है बीच में यहाँ पे बड़ी सी बिल्डिंग दिख रही है ।

और यहाँ बाजू हरी-भारी घास उठी हुई है मिट्टी पड़ी हुई है फतरे हैं ।

पानी का पाइप है बैठने की टेबल है यहाँं पे टेनिस बॉल के लिए जाली मारी गई है बम होल ले के।

ये एक थैंक्स फॉर योर विज़िट कोठा पूरा मुक्ता सरकार टोल गेट है।

पिंक कलर के और इसे नीचे मैट पर बिछा कर इसको रखा गया और यहाँ पर इसे बहोत अच्छी तरीके से--

यह एक बड़ा सा स्टेज है और यहां पे बहुत सारे फूलों के लड़ो को डाले गए। पीछे परदे मारे गए।

और यहाँ पे स्टेज पे नीचे से ऊपर तक बहुत सारी लाइन लगी हुई है दुल्हन-दूल्हा को मिलने के लिए--

यहाँ पे बहुत सारी लाइटिंग्स भी मारी गई है बहुत सारे लोग है यहाँ पे खम्भे भी लगा हैं आजू-बाजू --

और यहाँ नीचे रेड कलर का मैट बिछाया गया है पीछे ग्रीन कलर की परनी दिख रही हैं ।

ये एक गिफ्ट पार्क हैं नया फिश एक्योप्मेंटस है यहाँ पे --

हरे भरे झाड़ भी उगे हुए है याहाँ पे बाजु में मिट्टी दिख रही है ऊपर कला-काला दिख रहा है यहाँ पे और निचे पत्ते लकडिया--

ये एक कपड़े की दुकान है यहाँ पर बहोत सारे कपड़े दिख रहे है अंदर बहोत सारे एलईडी लाइट्स है कैमरे दे--

और यहाँ सामने भी गाडी है और बाजु मे भी एक बिल्डिंग है और यहाँ पे लेरे खम्भे वगेरा भी यहाँ दिख रहे है बहोत सारे डिजाईन के यहाँ कपड़े यहाँ लेडिस के खासकर यहाँ पर कपड़े है।

ये एक सीधी सी रोड है बाजु में हरी भरी घास और टीवी है बड़े बड़े पेड़ है यहाँ भाईसा आ रहे है रोड पर से--

ये एक कॉलेज है और यहाँ पे बोर्ड के ऊपर एक सम कराया गया है एक ग्रीन कलर का बोर्ड है सामने एक चेयर है बड़ा सा--

ओपन है यहाँ पे बहुत सारे लाइट्स भी है ग्लास -आस कटोरी भी यहाँं पे मिलते हैं।

ये एक ये एक पार्क है यहाँ पे बहोत सारे झूले है यहाँ पे बहोत सारे बच्चे खेल रहे है हरी भरी घास उगी हुई है।

ये एक फायने की दुकान है यहाँ पे बॉक्सेस में अलग-अलग कलर के फैनों को रखा गया है ये --

यह एक बड़ी कार दिख रही है ये बोर्ड लगा हुआ है इसलिए फोकस चालू है रोड पे ये चल रही है आजू बाजू घास उठी हुई है।

ये एक बुलेट गाड़ी है नीचे टायर से बिछाए गये है ।

ये बहुत अच्छी दिख रही है इसका इंजन क्लीन है बड़ा सा इसका फोकस हैं ।

ये एक पतंगा की दुकान हैं यहाँ पे बहुत सारे पतंगा है पेपर के प्लास्टिक के भी यहाँं हैं ।

यहाँं पे गोपालपुर रखी गए यहाँं पे वायर भी डाले गए आजू-बाजू खिड़कियाँं भी हैं।

पेड़ लगाए हुए गेट बंद है यहां पे भगोने हैं चुला है फ्रिज हैं बड़ा सा कूलर है ऊपर टीन शे मारा है लाइट के फोकसो से--

यह एक पलंग पे बैग रखा हुआ है पेपर भी पड़े हुए हैं और यहाँ पर्दा भी खींचा हुआ।

और यहां पे लाइट लाइटिंग भी दिख री है यहां पे बड़ी से हाईवे रोड है और यहां पे बड़े बड़े गाड़ियां जाते हैं ऊपर रनवे का बोर्ड लगा हुआ है।

ये एक बड़ी सी जे_सी_बी है और यहां पे एक पेट्रोल पंप है ऊपर बनाया जा रहा है ये ऊपर जाली मारी जा रही है यहां पे बहुत सारे लोग हैं।

ये एक बड़े से जेनेटर्स है यहाँ पहले पलंगा अलमारियों को बनाया जाता है यहाँ पर लोहे का टेबल है पीपा है--

ऊपर टीन शेड मारा गया है और यहां पे बहोत सारा सामान है पड़ा हु--